साइन चिपकाया हुआ है जिसमें लिखा है धोनई पोलो विद्या भवन।

इसमें कुछ खाना और अंडा भी दिखाई दे रहा है जो ट्रे में है।

तस्वीर में एक प्लास्टिक बैग दिखाया है जिसमें--

इसके नीचे में बहुत सारे प्लास्टिक बैग्स हैं पत्थर और सीमेंट सब दिखाई दे रहा।

इस तस्वीर में एक सुंदर सा रूम दिखाया है।

तस्वीर के राइट साइड में है एक दीवार जिसमें लिखा है ओपन टाइम टेन ए_म टू ऐंठ पी_एम ।

इसके ऊपर में ग्रीन कलर शेड बनाया हुआ है।

बहुत सारे लोग भी बिल्डिंग ठीक सामने में एक कोकोनट पेड़ है।

इसमें लिखा है इंडियन रेलवेज ट्रेन के आगे वाला में ड्राइवर भी दिखाई दे रहा है।

इनके आगे में ग्रीनरी फील और एक छोटा सा रोड दिखाई दे रहा।

घर के सामने में छोटी छोटी दुकान भी है और घर के बाहर में--

इस तस्वीर में एक बड़ा सा नदी दिखाई दे रहा है।

इसके कोना में है एक ब्लू कलर की बोट ।

नांव के सामने में दो आदमी और एक औरत दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में एक गार्डेन दिखाया है जिसमें बहोत सारे फ्लावर पॉट सब--

नदी के उस पार में वॉटरफॉल और कुछ आदमी दिखाई दे रहा--

के ऊपर वाले हिस्से सफेद कलर में पेंट किया हुआ है और नीचे ग्रे में है।

और वो आदमी व्हाइट बोर्ड में कुछ लिख रहा है।

और टेबल सब दिखाई दे रहा है और ब्राउन कलर में।

उसके सामने में है एक ब्लू कलर चेयर और एक छोता सा अलमारी तस्वीर के राइट साइड में दो ब्लैक कलर की--

दीवार में आदमी की बॉडी पार्ट्स की तस्वीर दिखाई दे रहा--

इस तस्वीर में रूम के इंटीरियर दिखाया है जिसमें ब्राउन कलर टेबल है बहुत लंबे से।

एक साइनबोर्ड रखा हुआ है और उसमें लिखा है तोतर मो टाटा मोटर्स ।

बिल्डिंग के आगे में दो बस है एक सफेद और येलो कलर बिल्डिंग के आगे में हरा भरा घास सब भी दिखाई दे रहा है।

नदी के उस पर में कुछ ब्रि ज और पार्क जैसी जगह है जैसे--

इस तस्वीर में दो दो जुड़ा कर के अपने फेशियल मसाच करा रहा--

सामने में एक टेबल है जो ग्रीन कलर टेबल क्लॉथ्स से कवर्ड --

और कई लोग ब्लू और ब्लैक पेन में है।

इस तस्वीर में हमें एक छोटा सा कॉफी स्टॉल दिखाई दे रहा है।

दुकानदार की टेबल सफेद रंग की है और इसमें दो शीशे बोतल हैं जिसमें बिस्किट सब रखा हुआ है यहां में पानी बोतल भी दिखाई दे रहा

इस तस्वीर में एक सुंदर सा ग्रीनरी जगह दिखाया है जो देखने में एकदम फ्रेश है।

किचन में यूज़ करने वाली चीज सब है जैसे कि बकेट मग --

एकस्ट्रा दुकान की छत टीना से बनाया हुआ है।